ये भारतीय डिश है जिसको हम जलेबी बोलते हैं ये प्लेट में रखी हुई है इसे हम हर भारतीय--

नाश्ते में एवं होटलों में जाके खाता है एवं इसको दूध के साथ भी--

किस गाड़ी में क्या काम होना है ये डिसाइड कर रहे हैं एवं उसकी जानकारी उसके मालिक को दे रहे हैं कि किस --

वो उनको अपने साथ ले जाएं जहां लोग अपने परिचितों के आने का इंतजार कर रहे हैं कि वो और कोर्ट से निकलें और उनको ले के जाएं।

और शाम के समय लोग यहां पे नित्य आरती के लिए आना स्स प्रारंभ होंगे।

अ ये ब्रिटिश काल का बना हुआ जंक्शन हैं।

ये एक कॉफी हाउस है जहां पर सुंदर डेकोरेशन --

वो व्यक्ति बैठकर किसी के आने का इंतजार कर रहा है बहुत देर हो गई वो व्यक्ति नहीं आया तो वो उसको कॉल करने वाला है।

ये बहोत ही सुंदर और आकर्षक है।

ये एक सुंदर सा चर्च है जहां पर--